आपका फिर से स्वागत है
हम इस सेंड मैल फ्रॉम नोट सेट इन पह्प डॉट इनी एरर को कैसे व्यवस्थित करें
हमने निर्धारित नहीं किया है कि यह इ मेल किसके तरफ से है
इ मेल भेजने के लिए हमें यह करने की आवश्यकता है
हम यहाँ फ्रॉम पैरामीटर जैसा कुछ भी उपयोग नहीं करेंगे
हमें विशेष हैडर्स को भेजने की आवश्यकता है
अतः यहाँ हम हेडर्स वेरिएबल बनाते हैं
जो कि मे mecom जैसे कुछ के समान नहीं है
हमें स्टैंडर्डाइज्ड मेल हैडर के साथ कार्य करने की जरूरत है जो है From और कोलन न कि सेमीकोलन
और फिर हम लिखते हैं उदाहरणस्वरूप पह्प एकेडमी
या आप एडमिन php एकेडमी जैसा कुछ लिख सकते हैं और com जोड़ें यदि आप चाहते हैं
वास्तव में मेरे पास वह डोमैन नाम नहीं है लेकिन हम इसे उसी की तरह रखेंगे
अतः From एडमिन phpacademycom अपने मेल के अंदर हम अन्य पैरामीटर को जोड़ने की आवश्यकता है जो कि हेडर्स है
तथा अब हम यहाँ आते हैं और आप यहाँ एलेक्स और यहाँ थिस इस आ test
टाइप कर सकते हैं
सेंड मे थिस पर क्लिक करें और हमें अन्य एरर नजर आती है
अब वास्तव में मैं मेरे कम्प्यूटर पर मेल सर्वर नहीं चला रहा हूँ
यदि आप अपने कम्प्यूटर पर मेल सर्वर नहीं चलाना चाहते हैं तो मेल सर्वर मेल फ्री के लिए गूगल पर ढ़ूंढें
और यह आपके कम्प्यूटर पर मेल सर्वर संस्थापित करेगा
जैसे कि अभी हम लोकल होस्ट पर चला रहे हैं
तथा आपके पास लोकल हॉस्ट के तहत चलने वाला एसएमटीपी मेल सर्वर होगा
अब जैसा कि मेरे पास मेल सर्वर नहीं है मैं अपने विश्वविद्यालय के ई मेल सिस्टम का उपयोग करूँगा
जो कि मेरे विश्वविद्यालय ई मेल पर डीएनएस या डोमेन नामे सर्वर डोमैन नेम सर्वर है
इस तरीके से मेरा ई मेल मेरे विश्वविद्यालय के माध्यम से भेजा जाता है
यदि आप विशेष डीएनएस सर्वर के बारे में जानते हैं यदि आपके पास डोमैन नेम पहले से ही है यदि आपकी वेबसाइट है तो आप इसे जानेंगे या कम से कम आप इसका पता लगाने में सक्षम होंगे
आप इसके माध्यम से ई मेल भेजने के लिए सक्षम होंगे
मैं जानता हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय का ई मेल डीएनएस सर्वर मेलहोस्ट डॉट शेफ डॉट एसी डॉट उक है क्योंकि मैं शेफील्ड विश्वविद्यालय में हूँ
अतः मुझे इसे मेरे पह्प डॉट इनी में शामिल करने की आवश्यकता है
और इसको करने का सही तरीका है कि यहाँ आएँ और अपने वेरिएबल्स को सेट करें
ओके हमें पह्प डॉट इनी में एसएमटीपी सेट करने की आवश्यकता है
और मेरी पह्प डॉट इनी फाइल खोलने के बजाय मैं इनी सेट फंक्शन का उपयोग करूँगा
और वेरिएबल नेम है एसएमटीपी
अतः हम अपनी पह्प डॉट इनी फाइल में इस लाइन को एडिट कर रहे हैं
और मैं वेल्यू के रूप में यहाँ मेल होस्ट करता हूँ
यहाँ हम एचो गेट इनी लिखते हैं जिसे एक विशेष वेल्यू मिलती है
आगे मैं एसएमटीपी लिखूँगा और वह यहाँ स्क्रिप्ट को नष्ट कर सकता है
अतः हम देख सकते हैं कि यह कैसे कार्य करता है
अतः मैं लिखता हूँ एलेक्स और फिर टेस्ट और सेंड मे थिस पर क्लिक करता हूँ
माफ कीजिए मैंने पूर्ण गलत टाइप कर दिया है
बड़ी गलती
वह है इनी गेट और इसे रिफ्रेश करें
ओके हम मूलतः मैल होस्ट डॉट शेफ डॉट एसी डॉट उक के लिए अपनी इनी फाइल में अपनी एसएमटीपी सेटिंग कर रहे हैं
और फिर हम इसकी वेल्यू एको करेंगे
अतः यह मुझे बताता है कि वह मैल होस्ट डॉट शेफ डॉट एसी डॉट उक के रूप में सेट हो गया है
मान लीजिए कि यह मेल हॉस्ट सर्वर या डीएनएस सर्वर कार्य करता है फिर बाकी कोड कार्य करेंगे
अपना मेल भेजने के बाद मैं पेज को नष्ट कर दूँगा
नहीं मैं नहीं करूँगा
मैं पेज को अभी नष्ट कर दूँगा
चलिए वापस चलते हैं और लिखते हैं एलेक्स और थिस इस आ टेस्ट
देख रहा हूँ कि सबकुछ ठीक है
हमारे पास मेरा टो मेरा सब्जेक्ट मेरा Fromadminphpacademycom नामक हेडर्स है
और हमारी बॉडी यहाँ है और हम अपने मेल फंक्शन को निष्पादित कर रहे हैं
अतः जब मैं सेंड मे थिस पर क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता
हमें कोई एरर नहीं मिली
अतः हम मान सकते हैं कि सबकुछ कार्य करता है
यदि मैं मेरे हॉटमेल और ई मेल पर आता हूँ और मेरे इनबॉक्स पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि हमें अभी एडमिन फ्पेकेडमी डॉट कॉम से एक मेल मिला है
यदि हम इस पर क्लिक करते हैं हमें अपनी सब्जेक्ट लाइन में इमेल फ्रॉम फ्पेकेडमी मिलता है
जिसे हमने यहाँ सेट किया है
और हमारे पास ई मेल पता है जिसे मैंने निर्दिष्ट किया है
आप इसे इसी तरह ऐलेक्स से या फ्पेकेडमी से रख सकते हैं
और फिर हमारे पास थिस इस एएन इमेल फ्रॉम एलेक्स है जो नाम हमने यहाँ फार्म के अंदर दिया है
और फिर हमारे पास 2 लाइन ब्रेक है जो कि 1 और 2 है
और थिस इस आ टेस्ट यह वह टेक्स्ट है जिसे मैंने वहाँ रखा है
अतः मेरे विश्वविद्यालय के डीएनएस मेल सर्वर का उपयोग करके यह मेल फंक्शन है
आपका इन्स्प एक डीएनएस मेल सर्वर होगा
इसमें ऑथेन्टिकैशन की आवश्यकता हो सकती है
जिसमें मैं ट्यूटोरियल को जल्दी ही पूर्ण करूँगा
अतः यदि यह कार्य नहीं कर रहा है तो यह ट्यूटोरियल देखें या मुझे ई मेल करें या मेरे यूट्यूब के माध्यम से मुझसे संपर्क करें
ओके तो उम्मीद है यह कई लोगों के लिए उपयोगी होगा
कृपया सब्स्क्राइब करें यदि आपने पहले नहीं किया है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है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
देखने के लिए धन्यवाद